चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं साथ में कुछ लोग यहां बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं।

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

चारों ओर कुर्सियां रखी हुई हैं एक ठो ब्रिज बनाया गया है ब्रिज के नीचे से ट्रेन जा रही है।

जो कोई खाना खा रहे हैं। यहां पर बहोत सी दुकाने है।

झरने के ऊपर बहोत सारे छोटे छोटे पोधै उगे हुए है।

चारों ओर दुकान बनाई गई हैं यहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

आगे यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं चारों ओर घर बनाए हुए हैं और यहां पास कुआ भी है कुआं में बहोत सारा पानी भरा हुआ है।

इस फोटो मे मुझे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत सारे पूल रखे हुए है साथ मे यहां पर बहुत सारे पानी के टब डले हुए है चारों ओर --

यहां पास एक एक फ्रिज रखा हुआ है साथ में यहां एक हेलमेट रखा हुआ है।